जैसा की आप देख सकते हैं ये तस्वीर दिख रही है आपको एक होटल की तस्वीर आप देख सकते हैं ये जो होटल है जो काफी बड़ा सा होटल है |

यहाँ पे जो आप देख को तस्वीर दिख रही है जो की मंदिर की तस्वीर है आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर --

यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में काफी सारे बाइक वगेरह यहाँ पर खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं।

ये जो तस्वीर नज़र आ रही है जो देख सकते हैं जो की एक नदी की तस्वीर है | आप देख सकते हैं इसमें ये नदी है जो काफी --